इस चित्र में हमें एक पेड़ नजर आ रहा है।

बिल्डिंग का रंग सफेद है ।

छतरी जैसा कुछ बना है।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

हॉवमोर आइसक्रीम पार्लर दिख रहा है ।

कुछ लाइटें लगी हुई हैं।

कांचदिखाई दे रहा है।

जिनका रंग सफेद है कुछ गाड़ियां दिख रही है।

इस चित्र में हमें तालाब दिखाई दे रहा है।

नीली रेलिंग बनी हुई है।

काफी सारी लाइटें दिख रही हैं ये सब लकड़ी की शेल्फ है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

सभी पेड़ों का रंग हरा है।

कुछ लकड़ी की बैंचें बनी है जो--

इस चित्र में हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है।

कुछ घर नजर आ रहे हैं।

एक फायर गार्ड रखा है ।

इस चित्र में हमें एक सड़क--

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक तालाब--

एक लकड़ी की अलमारी दिख रही है।

तमिल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है ।

काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं ।

इस चित्र में हमें एक नर्सरी --

टीचर ने हरी साड़ी पहनी है।

कुछ पेड़ लगे हुए है।

एक हरा गमला दिख रहा है।

पेंटिंग्स बनी हुई है।

एक टैटू की दुकान दिख रही है।

कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।

कुछ गाड़ियां दिख रही है।